यहाँ पर हरी-भरी छोटी-छोटी घास दिख रही है और सामने एक बड़ा सा कैफ़े रेस्टो है ।

यहाँ पर बहुत बड़ा सा खुला मैदान है जिसमें लाल रंग का डेकोरेशन हो रहा है।

का रंग उदय कलर का है यहाँ पर पर्दे भी लटक रहे हैं डेकोरेशन के।

यहाँ पर बहुत सारी काली कुर्सियाँ रखी गई हैं और यहाँ पर एक बोर्ड है।

और झाड़ों के दूर में एक बड़ा सा पहाड़ भी दिख रहा है।

और बाहर एक गाड़ी भी खड़ी हुई है और स्टेशनरी के बाजू एक इंटरनेट कैफ़े भी है।

यहाँ पर एक बड़ी शोरूम की कार है और बाहेर शोरूम के बाहेर दो का--

एक बड़ी सी रोड है यहाँ पर काले रंग का गेट भी है और ऊपर खुला आसमान है ये दिन का मंजर दिख रहा है।

यहाँ पर एक आदमी बाहर खड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ कन्स्ट्रकशन का काम चल रहा है।

बहुत से लकड़ियाँ लगे हुए हैं उन लकड़ियों पर दो आदमी चढ़ कर काम कर रहे हैं।

उस पोस्टर पे एक आदमी की फोटो चिपकी हुई है।

लोम पर टंगाए गए हैं यहाँ पर एक हरियार रंग का ड्रेस भी है और ए--

ये सामने कट्टों पर हरे भरे छोटे छोटे झाड़ हैं।

और यहाँ पर एक नखली परिंदा उता रखा गया है।

वो एक छोटा सा डेकोरेशन है और यहाँ पर एक खिड़की है चॉकलेटी रंग की।

और दो दरवाजे है और नीचे टाइल्स बिछाये हुए है आँगन में और बाजु पत्तियाँ भी लगी हुई है।

गैस का सिलेंडर रखा गया है और यहाँ पर पुं अ बड़े बड़े--

यहाँ पर ए लकड़ी का कारख़ाना है और बहोत से लकड़ियों के रखे हुए हैं हैं और अलग अलग--

ये तीन माले की बिल्डिंग है यहाँ पर गैलरियाँ भी हैं।

यहाँ पर एक मंदिर दिख रही है इस मंदिर का रंग लाल रंग है और उसके सामने एक छोटा सा गेट है।

उसके आजू बाजू हरे भरे झाड़ हैं और ऊपर खुला आसमान है।

उन दीवारों पर गोल चरके उतारे गए हैं हरे रंग का--

और ऊपर खुला आसमान है नीचे बाहेर रोड भी दिख रही है।

उनके लास्ट आख़िरी वाले शेल्फ में बैग पन्नियों में डाल कर बैग रखे हुए हैं।

यहाँ पर बहुत सारी मुर्गियाँ हैं और यहाँ पर नीचे मट्टी की जमीन है।

येलो कलर की चूंगड़ी भी रखी गई है और मुर्गियों के साइड में छोटे छोटे--

भी रखे हुए हैं और जमीन के ऊपर मट्टी है।

यहाँ ऊपर सिलिंग्स पर लाइटे लगी हुई है और यहाँ पर सफ़ेद रंग की दिवार है ।

बम्बू खाड़े और एक बम्बू आड़े लगा हुआ है और यहाँ पर बहुत सारे--

समान है छोटे छोटे चर्च में उसके नीचे खंभे भी है।

यहाँ पर एक बैंक है यहाँ पर एक आदमी नीचे बैठा हुआ है और एक आदमी साइकल लेकर खड़ा हुआ है।

यहाँ पर एक बड़ा सा गार्डन है ये किसी स्कूल का गार्डन दिख रहा है ।

यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर एक मेला जैसा दिख रहा है।

यहाँ पर बहोत सारा डेकोरेशन किया गया है और बहोत झूमर भी लटकाए हुए है और यहाँ पर डेकोरेशन के पर्दे लाल --

एक बड़ी सी रोड है और यहाँ पर बहुत सारे झाड़ा भी लगे हुए हैं।

और यहाँ पर एक बड़ी सी बिल्डिंग जैसा है वो एक टावर जैसा है उस पर घड़ी भी लगी हुई है ऊपर खुला आसमान --